बड़ा सा सैलून बना हुआ है सैलून के अंदर तीन-चार बड़ी सी कुर्सियां रखी हुई है।

पहाड़ के ए नीचे हरी-भरी सी घास लगी हुई है एक छोटी सी सड़क बनी है।

दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार हैं। पुल के रोड के बगल में एक बड़ा सा लाइट के तार का खंभा गड़ा हुआ है। उन खम्भों के पीछे कुछ छोटे-बड़े मकान बने हुए हैं।

बड़ी सी दुकाने बनी है दुकानों के बाहर शटर लगी हुई है।

बड़े से गैरेज के अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं गैरेज के अंदर एक कार को ऊंचाई पर रखा हुआ है।